यहां पे बहुत बड़ा सा एक घर दिख रहा है उसके पास म दो दुकान दिख रहा है एक कपड़े का दुकान एक जुते का दुकान ।

अ सामने कुछ लड़का खरीद रहा है उसके पीठ में बैग है।

और बु-बुक सेंटर में किताब दिख रहा है। एक आदमी खरीद रहा है।

अ ए.टी.म. के अंदर बहुत सारा बंदा हैं आगे कुछ जगह है उसके अंदर कुछ कागज गिरा हुआ हैं और लाल रंग का बा शटर दिख रहा है।

यहां पे बोहोत बड़ा फूलों का बागीचा है। बोहोत सब सा सारा फूल है। हरा रंग का पीला रंग का फूल दिख रहा है।

आगे बहोत सारा औरत दिख रहा है और सब घूमता देख के हाथ जोड़ के पूजा दे रहा है।

यहाँ पे एक एस.बी.आइ का ए.टी.एम है और ए.टी.एम के अंदर एक बंदा कैश विड्रॉ कर रहा है।